इसके ठीक सामने हमे बोर्ड नजर आ रहा है जो कि सफेद और ऑरेंज कलर में है।

इन पौधों में काफी फूल लगे हुए हैं यहां पर लकड़ी के ऊपर गेट बनाए हुए हैं।

नीचे माइटी भी हरे कलर की बिछाई गई है पीले कलर की कुर्सियां भी रखी गई हैं।

इसमें एक सौ आठ और छिहत्तर एक सौ चौदह लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें आर के कार्ड्स एवं डिजिटल स्टूडियो नामक एक शॉप दिखाई पड़ रहा है।